छोटे साइकिल भी रखे गए हैं छोटे बच्चे का । रेंजर साइकिल है । साइकिल है । बोहोत सारी साइकिले दिखाई दे रहे हैं ।

बालू दिखाई दे रहे है छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं लकड़ी दिखाई दे रहा है सीमेंट दिखाई दे रहा है ड्राम में पानी नज़र आ रहे है।

आप देख सकते है ऑफिस है यहाँ बहुत सारे कुर्सियाँ लगी गई हैं।

बैगों में सामान भरा हुआ रख दिखाई दे रहा है ।